बहुत सारे मिट्टीया दिख रही है।

बहोत सारा टीना रखा हुआ है एक आदमी खड़ा है उसके गले में लाल कलर का कपरा है।

छोटी छोटी घासे दिख रही है बहुत बड़ी बड़ी पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

आसपास एक दो फूल लगे हुए हैं।

कही कही छोटे छोटे घास दिख रहे है थोड़े थोड़े मिट्टी दिख रही।

बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है।

आस पास बिजली वाले पोल दिख रहे हैं जिससे बहोत बड़ी बड़ी लंबे लंबे तारे गई हुई है।

एक बड़ी सी घर दिख रही है इसमे बहोत सारी खिड़कियां है।

तीन शीशे लगे हुए हैं।

लाइट वाला भी लोहे का खंभा लगा हुआ है।

दीवाल का कलर बैगनी है।

एक लोहे वाली ग्रिल दिख रहा है।

एक बाइक दिख रही है स्कूटी दिख रही है कुछ लेडिस भी दिख रही है।

छत में बहुत सारी लाइट ए लगी हुई है।

एक बैनर में कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे एक ढाबा है जिसका नाम रोज ढाबा है उसमें बहुत सारे सामाने रखी हुई है।

यह कंस्ट्रक्शन साइड का फोटो है इसमें छत का ढलाई हो रहा है।

दीवाल पे एक पेंटिंग लगा हुआ है और पास में एक लकड़ी का सोफा बना हुआ है।

आसपास में एक लोहे का ग्रिल है जिसमें ताला भी मरा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

दुकान बंद है कुछ दुकान खुली है।

बाइक दिख रही है एक रोड दिख रहा है।

यहां पे एक दुकान है इसके काउंटर पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है जैसे एक्साइड एक्सप्रेस रखा हुआ है क्रम्पटन का पंखा रखा हुआ है।

चेयर का कलर हल्का नीला सा है एक क्यू_आर कोड लगा हुआ है।

बहुत सारी बिजली वाले तार है।

पे रात हो रहा है।

और बहोत सारे लाइटे लगी हुई है।

एक आदमी है जो पूजा कर रहा है जिसने जींस और शर्ट पहना है।

और बहुत सा चंदन सब भी दिख रहा है।

और भी बहोत से चीज--

एक आदमी है जो बैठा हुआ है।